पास ही में एक डस्टबिन पड़ा है।

बाथरूम में दो बेसिन लगी हुई है।

जिसमें बीच में एक बड़ा हार्ट शेप बना है।

बहुत सारा सुंदर फर्नीचर बना हुआ है।

उसने गले में गमछा डाला है।

बहुत ही सुंदर और प्यारे प्यारे हैं।

टेबल कुर्सियां बाहर रखी हुईं है जिनके ऊपर कैंडल --